एक फ्लेक्स बना हुआ है हाल ही इंटरनेट का नीचे जेंट्स खड़ा है और एक लेडीस दिखायी दे रही है कुछ लोग यहां पर फ्लेक्स को देखते हुए निकलते हुए जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा--

टूल्स दिखाई दे रहे हैं ओर इहा दो जेंट्स है जो दौड़कर अपने नए उम पॉलिथीन में पैक कर कर उम रख रहे हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे --